इसमें इस फोटो में एस_बी_आई का बैंक दिख रहा है।

जे_सी_बी है और यहां पर वो मिट्टी उठा --